जिसमें एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है और एक आदमी अंदर की तरफ खरा है।

और बाहर की तरफ लाल कुर्सियां --

और दो एक बाइक नीले कलर की है एक काले कलर की है।

एक आदमी सामने की तरफ अपने हाथ में फ़ोन लिए --

जो की कंक्रीट मिला रहे हैं।

इन डॉटस को तार के मदद से बांधा गया है।